यह एक होटल का रिसेप्शन है यहां पर हम एक व्हीलचेयर को रखे हुए देख सकते हैं।

यहां पर एक शीशे का टेबल रखा हुआ है।

बहोत ही अनोखी लाइट्स को लगाया गया है।

यहां पर बहुत साफ सफाई दिखाई दे रही है।

फर्श पर सुंदर टाइल्स लगाया गया है।

यहां पर कुछ लोग फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं।

दीवार पर दो सुंदर फोटो लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर एक हरे रंग की कंपार्टमेंटस बनी हुई दिख रही है।

यहां पर एक बड़ा सुंदर बिल्डिंग दिख रहा है।

बहुत सारा लाइट्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पहाड़ को काट करके सीढ़ी ही बना रखा गया है।

वहां पर एक हरे रंग की बोर्ड में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

वहां पर दीवाल बहोत सजी हुई दिखाई दे रही है।

पानी में कुछ फेंका हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर चारों तरफ पीली लाइट्स दिख रही है।

यहां एक क्लास रूम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

दीवाल पर ए_सी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ छोटे छोटे पेड़ और कुछ बहोत बड़े बड़े पेड़ उगे हुवे दिख रहे हैं।

यहां पे काफी सारे लोग पूजा करते हुए--

फर्श पर बहुत ही साफ सफाई दिख रही है।

वहां पे दो युवक बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

एक बैनर जिस पर गणतंत्र द्वारा लिखा है।